यह एक बड़ा सा समुंदर है समुंदर पर एक नाव भी है। उसपे बहुत सारे लोग भी है।

पे फूल भी लगाया गया है ऊपर से लाइट भी लगाया गया है।

नीचे प टाइल्स बिछा है कुछ खंभे भी दिया गया है।

यहां पे मार्केट करने वाला दुकान है बहुत सारे तीन से चार लोग भी हैं सामने पे कार्टून भी रखा गया है।

एक खाली बोतल भी है एक गमला है उसपे पत्ता वाला रखा लगाया गया --

मुरली दूध भी है तेल भी रखा गया है सैंपल भी है।

जो कुछ गैस नीचे गिर गए हैं आठ से दस। एक आदमी गिरा रहे हैं।

यह एक पानी टंकी है जो बहुत बड़े से बनाया गया है नदी का थोड़ा बीच पे है।

बोइलन भी बहुत सारे रखा गया है। नीचे तार वाला भी सिस्टम दिया गया है। तीन से चार लोग भी है।

पेड़ पौधे भी हैं इधर पे बादल का रंग व्हाइट है।

इधर पेड़ पौधे भी हैं व्हाइट रंग के बादल हैं।

यह एक घर है घर के नीचे दो से तीन लोग भी हैं।

ऊपर प कैमरा लगाया गया है लाइट भी है।

पीछे एक और प पेपर भी लगाया गया है जो केंद्र से रहता है।